यह एक आईसक्रीम का दुकान है जहां पर लकड़ी और शीशा का मदद से अलमारी बनाया गया है।

और यहां पे बहुत सारा कप और क्रीम रखा गया है।

और यहां पे टेबल भी है व्हाइट कलर का।

और यहां पर बहोत सारे कपड़े भी है और ट्राउजर और शर्ट भी दिख रहे है।

एक हिरन ब्लैक कलर का है और दो हिरन ब्राउन कलर का है।

यह एक बाइक शोरूम का ऑफिस का दृश्य से है जहां पे लोहा का मदद से चेयर बनाया गया है।

और यहां पे लकड़ी की मदद से सीढ़ी भी बनाया गया है।

यहां पे एक कैमरा भी दिख रहा है अतः यहां पे फोर जी लिखा हुआ है।

और यह इसके अंदर एक लैपटॉप और एक औरत भी दिख रही है जो कि ग्रीन कलर का स्वेटर पहने हैं और एक ब्लैक कलर का चेयर भी दिख रहा है।

एक फूल दुकान का दृश्य है जहां पर बहुत तरह का फूल लगाया गया है एक वाइट और पीला गुलाबी और लाल कलर का फूल भी है।

एक मूर्ति का पास सात आठ हाथ है यहां पे एक त्रिशूल भी लिए हैं।

और यहां पे एक स्प्लेंडर गाड़ी भी ब्लैक कलर का है इसके ऊपर एक आदमी बैठ गया बैठा है।

यहां पर एक सौ बयासी मार्जिन औरएक सौ दो सौ इक्तालीस मार्जिन लिखा हुआ है।

यहां पर एक प्लेट में एक जलेबी भी दिख रहा है वाइट कलर का प्लेट है।

और एक आदमी पीला कलर का जर्सी पहनने तसवीर खिच रहा है हाथ में कॉपी लिए है।

और तो यहां पे प्याज का बोड़ा भी है लाल कलर का।

आपका यहां फोन पे का स्कैनर भी है और कैंची भी।